और एक बन्दे की मुँह का मेकअप सा कर रहा है कुछ और आगे स्प्रे रखी हुई है। और बगल में भी स्प्रे रखी हुई है और ये फोटो कैमरे का है ए कैमरे से शीशे का फोटो आ रहा है।

इसमे भी एक सामने की साइड से सजी हुई है किसी शादी के लिए घर वाला का प्रोग्राम हो सकता है।

ये कोई किसी का हॉल है किसी फंक्शन के लिए जो कुर्सियों को बडी अच्छी तरीके से सजाया गया है।

इसमें दो एल.इ.डी. टी.वी. दिखाई दे रही हैं और एक ऊपर लाइट जल रही है।

नीचे दो घर बने हुए हैं उसके ऊपर अ पत्थर नीला पड़ा हुआ है।